और मकान की दीवाल के सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

मुझे इस चित्र में एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

शाप के सामने एक जालीदार खिड़की भी है।

साथ में कुछ टेबल लगा है उस पे कुछ सेल पर लगा है।

बहोत बड़ा मकान दिख रहा है जिसकी चार दिवारियां घेरी गई हैं।

और कुछ बच्चे पिलर की तरफ इशारा कर रहे हैं।

और इस पर चाय बनाते हुए एक व्यक्ति खड़ा है और--

ऊपर कुछ मौसम साफ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र मे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है इस हॉल मे कुछ सामान रखे गये है।

खाली जगह है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है व्यक्ति का चेहरा अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।

कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और--

बगल में एक मैदान है और मैदान में एक खंभा गड़ा हुआ हैं।

मुझे इस चित्र में एक झोपड़ी दिख रही है।

कुछ लकड़ी के गुटके रखे गए है और कुछ लोग--

मुझे इस चित्र में एक अलंकार फ्लेक्स नाम की दुकान दिखाई दे रही है।

जिसकी सजावट की गई है और इसमें एक चेयर रखी गई है और--

पीछे का जमीन गंदा दिख रहा है।

क्रिकेट का मैदान दिख रहा है और क्रिकेट मैदान में स्टंप और पिच बोहोत ही क्लीन दिखाई दे रही है।

कई प्रकार की लेडिस फैंसी साड़ियां और सूट भी दिख रहे हैं।

जो अपना सर छुपाए हुए हैं उसका सर धुंधला दिख रहा हैं।

जिसके सामने कइ झाड़ियां भी लगी गई हैं।

खड़ी है और वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर खड़ी है।

कुछ लोग खड़े होकर पेट्रोल भरा रहे हैं।